कुछ लोग खड़े दिख रहा है।

ऊपर पंखा चलता दिख रहा है।

सामने की ओर एक बड़ा टेबल दिख रहा है।

एक बड़ा दरवाजा दिख रहा है।

एक बड़ा बोर्ड लगा है जिस --

दरवाजा बहुत बड़ा दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत इमारत दिख रहा है।

एक दुकान दिख रहा है दुकान के बाहर पोस्टर लगा दिख रहा है।

हरा भरा पेड़ दिख रहा है आसमान नीला दिख रहा है।

एक औरत दिख रही है जो ट्रेडमिल यूज कर रही है।

इस तस्वीर में एक वाहन दिख रहा है वाहन का रंग लाल दिख रहा है।

पीछे आसमान दिख रहा है बहुत सारा गाड़ी दिख रहा है।

गाड़ी के अंदर का सीट दिख रहा है।

कुछ कॉपी दिख रहा है एक दीवार पर पोस्टर टंगा दिख रहा है दीवार सफेद दिख रहा है नीचे का जमीन दिख रहा है।